इस दॄश्य मे हम देख सकते है के किसी पहाड़ के किसी उद्यान के अंदर का दॄश्य है ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है कुछ छोटे पौधे दिखाई दे रहे है कुछ फूलों के पौधे दिखाई दे रहे है सामने से जाता हुआ स्ट्रेट रास्ता दिखाई दे रहा है कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

इस द्रस्य मे हम देख सकते है ये गोशल्य के बाहर का दरषये हे यहा हमे शदेड़ तीन दिखाई दे रहा हे सामने हमे बाद पेड़ दिखाई दे रहा जिससे लागि हुई सीडी दिखाईद दे रही हे|

यहाँ कुछ टमाटर पके और कुछ टमाटर कच्चे दिखाए --

यहा कई सारे इक्विपमेंट भी रखे हुए है कुछ यहा पे फैब्रिक का फ़ाइबर का वॉल दिखाया गया है हमे और भी सामान धिकाई दे रहे है।

इस दॄश्य मे हम देख सकते है ये बहोत ही खूबसूरत और मनमोहक दॄश्य हेऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है नीचे नीला समुन्द्र का पानी दिखाई दे रहा है ये एक समुन्द्र के के किनारे का नजारा है।

इस दृश्य मे हम देख सकते है यहा हमे एक मंदिर या फिर किसी भंडारे के बाहर का दृश्य है ये बहोत ही खूबसूरत तरीके से यहा डेकोरेशन किया गया है।

इसके पीछे कई हिरण दिखाए गए है सामने कुछ बास दिखाए गए है पीछे हरा पेड़ दिखाया गया है कुछ यहा घास के देमान दिखाए गए है पीछे बिल्डिंग दिखाई गई है।